जैसे कोई और कुछ लोग अन्य लोग बैठे भी हैं कुछ दो तीन लोग खड़े भी हैं चल फिर भी रहे हैं अच्छी चहल पहल हैं।

और कुछ लोग अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं जैसे की--

ऊ उसके पीछे कमरा वमरा भी है बैग वैग भी रखा है कुर्सी के ऊपर अं--

जैसे कि हम देख रहे है यह दवा खाना है यहां तीन गाड़िया भी दिख रही हैं बगल से कपड़े की दुकान भी हैं।

के नीचे थे एक पार्क भीं दिख रहा हैं कहीं-कहीं पानी भीं भरा हुआ हैं।

हमको बोर्ड भी दिख रहा है कोई ट्रेन से वीडियो बनाते हुए ऐसे कुछ दिख रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

मेरे को यह लग रहा है कि यह रेलवे ब्रिज है अरे ओ नदी के ऊपर समुंदर टाइप का दिख रहा है सामने और से क्या बोलते है शय भी दिख रहा है।

यह एक तो समझ में नहीं आ रहा बोर्ड के ऊपर की कौन सा स्टेशन है इंसान भी कोई नहीं दिख रहा है।

एक दो बच्चे दो तीन बच्चे पीछे साइड खडे हो के लापरवाही कर रहे हैं मैडम भी सामने आगे खड़ी है।

और अगल बगल ऐसे लग रहा है की खेती पाकी भी--

मैं देख रहा हूं कि जैसे यहां आदिवासी लोगों को जलसा है।

जैसे कि यहां कोई बच्चा देवी--

या फिर गड़े हुए साइड बैठायी हुई है पता नहीं ये बिल्डिंग के अंदर क्या है।

यहां कोई दिख नहीं रहा है यह लग रहा है कि रात का टाइम है।

हमको यह लग रहा है कि जैसे यह छोटे बच्चों की दुकान कपड़ों की दुकान है।

वहां पर एक से एक वेराइटी की रथे है परन्तु येह--